यहाँ पर हमें एक मॉल दिखाई दे रहा है जिसका नाम कबीर है उसके आस-पास बहुत सारे बिल्डिंग और घर दिखाई दे रहे हैं दो महिलाएं --

हमे सामने ही दिखाई दे रहीं हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमे एक सफेद मंदिर दिखाई दे रहा है जिस पे बहोत सारे खन के खन बने हुए है।